कि ये छोटा मोटा बाजार मालूम पड़ता हैं। बाजार में एक सब्जी विक्रेता सब्जी बेच रहा हैं।

बहुत दूर दूर कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई पड़ रहे हैं।

उसपे एक लाल टी शर्ट शर्ट पेहन के व्यक्ति काम कर रहा है।

एक उजला कलर का भी बिल्डिंग है।

और इसके रेलिंग पे दो व्यक्ति बैठा हुआ है एक हरा कलर का ड्रेस में है।

बहुत बड़ी दुकान है यहां रंग बिरग की चुडिया जो है।

एक चाय पान की दुकान है।

है जहाँ एक टेबल रखी हुई है एक लोहे का स्टूल टाइप का बना हुआ रखा हुआ है।

बगल में छोटे छोटे गमले हैं।